पीछे एक में गाए भी दिख रही है काले कलर की जो कि शायद चारा खा रही है |

इस चित्र में हमें एक पंडाल नजर आ रहा है जिसमें पीछे एक माताजी नजर आ रही है |

साइड में हमें एक और पेड़ नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें छोटे-बड़े अलग-अलग प्रकार के झींगे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें उल्टे हाथ पर और सीधे हाथ पर एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस में क्षेत्र में हमें पीछे हरियाली भरा एक खेत --

सामने हमें एक सीधी लंबी इमारत दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक माताजी का पंडाल नजर आ रहा है।